बहुत सुंदर वाटर भी है पानी है पार्क है साइड में स्विमिंग खेलने के लिए आते है ।

ये एक क्लास रूम है जहाँ पे डेस्क ब्रेंच लगा हुआ है विंडो है फेन है वाइट कलर का पेंट किया हुआ है बोर्ड है।

ये एक दुकान है गिफ्ट का जहां पे गर्ल्स का सारा डोलस रखा हुआ है बुक्स रखे हुए हैं। कलर रखे हुए हैं ड्रॉइंग करने वाली चीज बच्चों का बहुत तरह तरह के समाने यहाँ पे रखा हुआ है प्रोजेक्ट का सामान है खेल-कूद का सामान है और देखने में भी अच्छा लग रहा है कितना अच्छा से सजा के रखा हुआ है बड़ा ही सुंदर --

यह एक गुलदस्तें की दुकान है जहाँ की तरह-तरह की गुलदस्तें मिलते हैं सजा हुआ रंग-बिरंग के फ्लॉवर्स है गजरा है ।

यह एक किराना स्टोर है जहाँ पे बुक्स मिलते हैं और पेन मिलते हैं कुछ खाने की चीजें मिलते हैं कलम बगेरह पूजा-पाठ का सामान भी है साइड में रखा हुआ है ।

मॉर्निंग में आते हैं लोग बैठते हैं अपने योगा करते हैं अपने शरीर को हेल्थी बनाते हैं।